उड़ रहा हैं चल रहा हैं हरी हरी घांस दिख रही हैं पंछी के--

काफी सारे कार के समान रखे हुए--

यहां बच्चे योगा कर रहे हैं इनका योगा मैट काफी रंग भरा लग रहा है।